यह एक पहाड़ी इलाके की तस्वीर है।

जमींन पर कुछ बिछाया गया है जिस पर लोग बै--

तस्वीर में एक रूम दिखा रहे हैं।

तस्वीर में एक छोटी दुकान दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सामान भरा हुआ है।

इसके बाहर एक साइन बोर्ड है जिस पर ऑफिस का नाम लिखा हुआ है।

स्टैचू एक रहीसी प्लेटफार्म पर रखा हुआ है।

कुछ और ग्रीनरी भी दिखाई दे रहा है।

दुकान में चिप्स के पैकेट्स और अदर स्नैक्स शेल्व्स पर कुछ खाने के आइटम्स दिख रहे हैं।

शटर के पीछे कुछ लोग काम कर रहे है कस्टमर भी दिखाई दे रहे है।

परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल कपड़ा में है।